इस दृश्य में मुझे नई नई साइकिले दिखाई दे रही है ।

यहां मिट्टी से बने हुए गमले भी दिखाई दे रहे हैं ।

यहां की दरवाजे भी दिखाई दे रहे हैं।

कुर्सी भी दिखाई दे रही है ।

इस दृश्य में मुझे कई सारे बसे दिखाई दे रही हैं।

यहां पंछी भी दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में मुझे अलमारीयो में रखी वस्तुएं दिखाई दे रही है।

तथा अन्य व्यक्ति भी दिख रहे हैं।